तीन लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है छत पर एक बड़ा सा छत्ता लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत आसमान में ढूंध छाई हुई दिखाई दे रही है।

बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है सड़क पर एक साइकिल है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।